और दुकान के आगे में दो कैरम बोर्ड है।

काउंटर में एक इंसान है।

यहां पे एक हाल है।

यहां पे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

और आगे में एक लाइट बल्ब हैं।

यहा पे एक रूम दिखाई दे रहा है।

और घर के अंदर बहुत सारा चेयर है।

और उसका बीच में एक पाइप है।

और बहोत सारा कार्टूंस भी है।

और वो उसका अंदर में बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहा है।

एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

और घर में बहुत सारे विंडो भी दिखाई दे रहा है।

दो फ्लावर पॉट्स दिखाई दे रहा है।

टेबल भी दिखाई दे रहा है।